और हमें सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करनी चाहिए। रनिंग करने से हमारे पैर भी फ्रेश रहती है और पूरा शरीर भी फ्रेश रहता है।